बैनर पे लिखा हुआ है प्रभारी कोचिंग सेंटर युपीपी स्पेशल बेच प्रारंभ --

और उसके नीचे लिखा हुआ है एयर फ़ोर्स नेवी ग्रुप नेवी और सभी प्रतियोगिता की सम्पूर्ण तैयारी --

और नीचे यहाँ गली दिखाई दे रही है नीचे भी बहुत सारी चीज हमको यहाँ पर रखी हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारी परफ्यूम भी हमको दिखाई दे रहे हैं।

भी हमको पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है जिस पर बहुत सारी बाइक हमको खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।